भारत माता सरस्वती माता बनी हुई है हाथ में झंडा है।

बैंगन लगा हुआ है देखने मे बहुत सुंदर लग रहा है ।

दिखने में बहोत सुंदर लग रहा है।

बहोत सारा आदमी है साइकिल चल रहा है मोटरसाइकिल चल रहा है टेम्पो चल रही है कार कार चल रही है ।

यह मंदिर है मंदिर में बहुत --

कोई निकलता है कोई टालता है देखने में बहोत सुंदर लग रहा है बहोत सारा आदमी आया हुआ है।

असमान दिखाई दे रहा है असमान का रंग ब्लू है।

इसमें दवा रखा हुआ है दवा है।

यह डिपार्टमेंट और पोस्ट है।

यहां पे आदमी सब बइठल है। रंग बिरंग की मछली रखा हुआ है झींगा मछली है पोथी है डेढ़वा है --